एक पेट्रोल टैंक है इंडियन ऑइल यहाँ पर एक पेट्रोल का ट्रक खड़ा हुआ है और कुछ फ्लैग भी लगे हुए है।

यहाँ पर सभी छोटे-छोटे से बच्चे है किसी के हाथ पेंसिल है तो किसी के हाथ में सीजर है पीछे पिंक कलर की दीवार से टिक के बैठे हुए।

यह एक बड़ा सलौन है यहां पर कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं।

कुछ लोग यहाँ खड़े होके फिश ले रहे हैं बड़े-बड़े टबों में फिश भी रखी हुई है और कुछ में पानी भी रखा हुआ है।